इ एगो फूल के दोकान है| ऐमे घूमे में खेले में कूदे में --

कंडक्टर है डाइवर है आइतर पैसे लेवे वाला ऐथि केशियर केयरमनी वाला देखेत कितना अच्छा लगत ई देखेमें सबसे अच्छा लगते ई |

एक मछली बजारी इमे मछली मिले छे अच्छा-अच्छा दखिये ऐमे मछली कयो खाव के देखिये कितना अच्छा लगे छे मच्छी तय के खाने खानीर के खातिर कितना अच्छे लगे छे देखियो कईओ मछ्ली उछलि खावु को--